C में पॉलीमॉर्फिज्म के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शन हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटू ओएस वर्जन 1110 g कम्पाइलर वर्जन 461 सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म के परिचय से शुरू करते हैं
पॉलीमॉर्फिज्म भिन्न फॉर्म्स लेने की क्षमता है
यह समान नाम के फंक्शन को भिन्न तरीकों से प्रयोग करने का मेकेनिज़म है अब वर्चूअल फंक्शन्स देखते हैं
वर्चुअल फंक्शन क्लास का मेम्बर फंक्शन है
यह अपनी डिराइव्ड क्लास में ओवर्राइड किया जा सकता है
यह वर्चूअल कीवर्ड के साथ घोषित किया गया है
वर्चुअल फंक्शन कॉल रन टाइम के समय हल की जाती है
अब वर्चूअल फंक्शन्स पर एक उदाहरण देखते हैं
मैंने कोड पहले ही लिख लिया है
अब इसे पूरा समझते हैं
ध्यान दें हमारा फाइलनेम virtualसीपीप है
इस प्रोग्राम में हम रेक्टेंगल पैरेललोग्राम और ट्राइएंगल का एरिया ज्ञात करेंगे
यह आईओस्ट्रीम हमारी हैडर फाइल है
यहाँ मैं एसटीडी नेमस्पेस उपयोग कर रही हूँ
फिर हमारे पास एक क्लास पैरालेलोग्राम है
यह बेस क्लास है
इसमें हमने इंटीजर वेरिएबल्स विड्थ हाइट और आर
घोषित किये हैं
ये प्रोटेक्टेड घोषित किये गए हैं
फिर हमारे पास पब्लिक की तरह घोषित फंक्शन set values हैं
यहाँ हमने दो आर्ग्यूमेंट्स आ और ब पास किये हैं
फिर हम पब्लिक मेम्बर्स प्रयोग करके प्रोटेक्टेड मेम्बर्स एक्सेस करते हैं
यह हमारा वर्चूअल फंक्शन एरिया है यहाँ हम पैरेलेलोग्राम के एरिया की गणना करते हैं
फिर हमारे पास डिराइव्ड क्लास की तरह क्लास रेक्टेंगल है
यह बेस क्लास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को इन्हेरिट करता है
यहाँ हम फंक्शन एरिया को ओवर्राइड करते हैं
फिर हम रेक्टेंगल के एरिया की गणना करते हैं
और वैल्यू प्रिंट करते हैं
यहाँ हमारे पास ट्राइएंगल की तरह एक अन्य डिराइव्ड क्लास है
यह भी बेस क्लास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को इन्हेरिट करता है
यहाँ दोबारा से हम फंक्शन एरिया को ओवर्राइड करते हैं
फिर हम ट्राइएंगल के एरिया की गणना करते हैं
और हम वैल्यू प्रिंट करते हैं
यह हमारा मेन फंक्शन है
यहाँ हम क्लास पैरेललोग्राम का एक ऑब्जेक्ट प बनाते हैं
हम यहाँ प्वॉइंटर पैरेलल देख सकते हैं
यह क्लास पैरेललोग्राम का पॉइंटर है
यह बसे पॉइंटर कहलाता है
बेस क्लास का पॉइंटर ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को इंगित कर सकता है
यहाँ हम रेक्टेंगल और ट्राइएंगल क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं
यहाँ प के एड्रेस पर पैरेलल को नियत किया गया है
फिर हम आर्ग्यूमेंट्स 3 और 2 पास करते हैं
फिर हम फंक्शन एरिया को कॉल करते हैं
यहाँ रेक्ट के एड्रेस पर पैरेलल को नियत किया गया है
रेक्ट क्लास रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है
दोबारा हम आर्ग्यूमेंट्स 4 और 5 पास करते हैं
और हम फंक्शन एरिया को कॉल करते हैं
और अंत में हम ट्राइएंगल के एड्रेस पर पैरेलल को नियत करते हैं
टीआरजीएल यह क्लास ट्राइएंगल का ऑब्जेक्ट है
यहाँ हम आर्ग्यूमेंट्स 6 और 5 पास करते हैं
और फंक्शन एरिया कॉल करते हैं
और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब हम प्रोग्राम निष्पादित करते हैं
अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl Alt और ट दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
कम्पाइल करने के लिए टाइप करें g स्पेस virtualसीपीप स्पेस o स्पेस वीर एंटर दबाएं
टाइप करें vir एंटर दबाएं
आप देख सकते हैं कि आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है एआरईए ओएफ पैरालेलोग्राम इस 6 एआरईए ओएफ रेक्टेंगल इस 20 और एआरईए ओएफ ट्रायंगल इस 15 अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शन उदाहरण वर्चुअल इंट एआरईए एक नियत कार्य में रेक्टेंगल स्क्वायर और ट्राइएंगल के पेरीमीटर की गणना करें
वर्चूअल फंक्शन की तरह पेरीमीटर बनायें
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद